जहाँ अंधेरा हो रहा है और फ्लेश लाईट से सिर्फ एक ही पत्‍थर के ऊपर रोशनी दिखाई जा रही है यहाँ पे बहोत से रंग बिरंगे पत्थर हमें देखने को मिल रहे --

ये फोटो एक रोड की है जिसके किनारे स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया का ए.टी.एम है।

यहाँ पर दो बाईक खड़ी हुई हैं और इस तस्‍वीर में चार दुकाने हैं। एक स्‍कूटी भी है और एक और बाईक है।